ये एक ग्लास की दुकान है यहां पर बहोत सारे चश्मे--

यहां पर कुछ चंदूल फूल और व्हाइट कलर के मोगरा फूल भी रखे हुए हैं।

यह दो लड़कियां जो की सेल्फी ले रही है।

पीछे में एक मॉल भी दिख रहा है मिठाइयों का कलर --

कुछ मछीयों को खरीद रहा है मछीया बहोत अलग तरीके में है।

यहां पर एक वाइट कलर में कार भी खड़ी हुई है।

और एक सर ठहर कर कुछ पढ़ा रहे हैं।

और एक छोटा सा घर भी दिख रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

ये एक क्लॉथ स्टोर दिख रही है यहां पर मेंस वेयर की--